यह एक डाकघर है जिसके बाहर बहुत सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं एक विक्की भी खड़ी है और एक पेड़ खड़ा है।

और इसके चारों तरफ बाउंड्री है।

एक जिम वालों का सेलिब्रेशन है जहां जिम वालों को अवार्ड मिलते हैं।

और एक मशीन धरी है जिस पे दौड़ लगाई जाती है।

यह एक पार्क है जिसमें बहुत सारे गमले रखे हैं और पेड़ पौधे लग रहे हैं।

और आदमी बैठे हैं एक पंडी पंडित जी भी हैं।

यह एक फैक्ट्री सी है जिसमें बहुत सारे आदमी हैं।

और बहुत सारी दरवाजे से भी हैं एक पेड़ खड़ा है और बाहर गार्डन सा है जिसमें पेड़ पौधे लग रहे हैं।

जिसपे ऊपर छाव रखा है नीचे एक बाइक पे आदमी है एक वैसे खड़ा है।

और बहुत सारे आदमी हैं मोटरसाइकिल है।

यह एक जनरल स्टोर है जिसमे बच्चो के बहुत सारे खेल खिलौने--

और ड्रम रखें हैं बाहर एक औरत भी खड़ी है।

खंभा सा भी लग रहा है सरिया बंध रहा है एक।

और बाहर दो आदमी खड़े है। एक आदमी के हाथ में फोटोस हैं।

और एक आदमी बराबर में कुर्सी बिछा कर बैठा हुआ है।